रखा हुआ है और पीछे लाइन से बड़े बड़े बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और सामने कुछ कुर्सियां--

सामने एक कार दिख रही है जो ऊपर टंगी हुई है सफेद कलर की है नीचे एक आदमी--

सामने ये एक तालाब दिख रहा है जिसका पानी काला सफेद दिखाई दे रहा है और सामने बहोत सारे--

पीले कलर की लैट जल रही है गुड फूड लिखा है और भी बहोत कु --

रहा है इस ऊपर छत सफेद कलर की है नीचे दीवाल लाल कलर की है।